यहाँ पर एक लम्बी सड़क जाती हुई दिखाई दे रही है और उसके बगल में एक बड़ा सा खेत दिखाई दे रहा हैं।

मे भी कुछ डिब्बा पड़ा हुआ है और एक वाइट कलर का कार है उसके ऊपर ही वहा को खोल कर रखा हुआ है।

एक पोस्टर मे गणेश बुक्स लिखा हुआ है नीचे मे भी श्री गनेश बुक एंड स्टेशनरी लिखा हुआ है ओ नीचे शटर लगा हुआ है जो बंद है आबी और एक कूलर भी लगा हुआ है।

यहाँ पर एक भारतीय स्टेट बैंक का पोस्टर लगा हुआ है। और उसके नीचे लोहे का शटर लगा हुआ है।